और उसका पीछे में कुछ तस्वीरें बना के है।

ये एक रिसोर्ट का तस्वीर है।

और बाकी लोग बे बैठ रहा है और दो लड़का खड़ा हो रहा है।

और एक बाइसिकल दिख रहा है उसका ऊपर में और एक इंसान साइकिलिंग करने वाला है ऐसा दिख रहा है।

वो लोग डांस कर रहा है।

और जो तीन बच्चे हवा में खरा हो रहा वो लोग--

इस तस्वीर में मॉनेस्ट्री है।

दो तीन बरा वाला पेर है।

येलो और व्हाइट कलर में दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

घर का बगल में दो गाड़ियां पार्किंग करके हैं।

इसमें हरा घास भी नहीं है।

मेला का बाहर मे एक बाइक पार्किंग करके रखा हुआ है।

हरियाली रंग का पेड़ दिख रहा है।

और एक बंदा जो आइसक्रीम पकड़ के है।

इसका अंदर में कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है।

अ उसमें आई_सी_आई_सी_आई बैंक लिख के है।

हरा रंग का पेड़ दिख रहा है।

और वहां में तीन चेयर है और वो चेयर का रंग भी लाल है।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

बहोत सारा आदमी लोग भी है।

बहुत सारा इंसान दिख रहा है।

दूर दूर तक पहाड़ नहीं दिख रहा है।

और इसमें इंसान भी नहीं है।

एक घर दिख रहा है।

क्यूं_आर कोड भी एक टेबल का ऊपर में रखा हुआ है।